यहाँ पर बहुत प्रकार के झूले होते हैं स्टेचू होते हैं।

यहाँ पर पंडाल बनाया है उसका नाम बाबा डेकोरेटर्स है ।

यह एक कार है |

यह एक बुक स्टोर है ।

यहाँ पर आप इमरजेंसी में पैसा उठा सकते हैं।

यह एक साइकिल का शोरूम है। यहाँ पर हरे एक किसम का साइकिल मिलता है।